यहां पर बहुत सारे व्यक्ति व बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर वातावरण साफ लग रहा है।

सामने दरवाजे पर एक महिला व कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

नीचे कच्चा मैदान है तथा उसके ऊपर छोटी छोटी हरी घास उगी हुई है।

इस प्लेट को दो व्यक्ति एक मशीन पर रखकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की ओर तेज रोशनी दिखाई दे रही है तथा कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा है।

सामने एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर बंधन बैंक लिखा हुआ है तथा दूसरी तरफ बंधन बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

यह किसी सार्वजनिक स्थान का दृश्य लग रहा है यहां पर सामने की ओर दो मूर्तियां दो छोटे छोटे मंदिरों में रखी हुई है।

अतः यहां पर सभी पूजा करने के लिए आते होंगे।